नमस्कार आपका स्वागत है यह एक अधिक स्पष्टीकरण विडियो है
जब आप phpपीएचपी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका सामना कुछ आम एरर्स से हो सकता है मैं उनके बारे में बताऊँगा
उनमें से अधिकतर स्वव्याख्यात्मक होती हैं
मैं कहना चाहूँगा कि 50% एरर्स जिनसे आपका सामना होता है तब होती हैं जब आप ग़लती से कुछ टाइप कर देते है और ध्यान नहीं देते या आप कुछ छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं
ऐसी गलतियाँ सभी करते हैं अर्धविराम छोड़ना या एक अतिरिक्त कोष्ठक जोड़ना या इसी प्रकार से कुछ
अब मैंने यहाँ पर कुछ पेज बनाएँ हैं यह कुछ एरर्स हैं जिनसे आपका सामना संभव है
वहाँ और भी हैं यह सूची संपूर्ण नहीं है यह केवल कुछ मूलतत्वबैसिक्ससमाविष्ट करता है
आपको प्रत्येक एरर एकएक करके समझाने के लिए मेरे पास एक कांटेक्स्ट एडिटर तैयार है
अतः पहला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वह htmlएचटीएमएलहै
मैंने यहाँ पर काफी htmlएचटीएमएल का उपयोग अपनी echoएको कमांड में किया है
यदि मैं इस पेज को यहाँ रन करता हूँ हमें यहाँ पर यह एरर मिलती है
यह parse error कह रहा है और हमें यह सूचना यहाँ पर मिल रही है
वस्तुतः आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अल्पविराम या फिर अर्धविराम अपेक्षित है
यह हमें एक लाइन संख्या देता है अतः जब हमें इनमें से कोई एक parse error मिलती है यह हमेशा ही एक लाइन संख्या देगा
यह यहाँ पर लाइन 5 दिखा रहा है
अतः यदि हम नीचे लाइन 5 पर आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि line 5 comma 19 ln5 col19 हमें सारी सूचना मिल गयी है
लाइन 5 यहाँ पर है
अब यहाँ पर दृष्टिगत रूप से यह गलत नहीं है
phpपीएचपी जिस तरह से echoएको कमांड का अर्थ लगाता है वह यह है कि हमें शुरुआती स्थान हमारे डबलdouble उद्धरणचिन्हquotes यहाँ पर मिल गये हैं और अंत यहाँ पर अतः यह आरंभ होगा और यह अंत
वस्तुतः अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि हम htmlएचटीएमएललागू कर रहे हैं हम इसके बीच में डबलdouble उद्धरणचिन्होंquotesका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि एकोecho कमांड को यहाँ से शुरू और यहाँ पर अंत समझ लिया जाएगा
मेरे खयाल से मैं यह मेरे एकोecho फंक्शनfunction के ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ
अच्छा हमें इस लाइन में एररerrorमिलने का कारण यह है क्योंकि यह डबलdoubleउद्धरणचिन्होंquotes की पहली उपस्थिति है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए
अब तकनीकी रूप से phpपीएचपी ने इसे नहीं लियाअतः यह यहाँ पर नहीं होना चाहिए
लेकिन यह अर्धविराम कि अपेक्षा करने के बारे में यहाँ कह रहा था के जब हम एको का अंत करते है हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं अतः यह इसके लिए जो देख रहा था वहाँ पर है
किन्तु तब इसके बाद भीयह बिलकुल निरर्थक बन जाता है
अतः हमें क्या करने की ज़रुरत है कि इसके बदले हम अपने सिंगलsingle कोटेशनquotation मार्क्सmarksका प्रयोग करें
अब यदि मैं इसे सेव करता हूँ हमें अब लाइन 6 पर एक एररerror मिलेगी क्योंकि एररerror इसके नीचे आ गयी है यह 6 में बदल गया
देखिये आप जानते हैं कि लाइन 6 पर या लाइन 6 के नज़दीक आपको कुछ बदलने की आवश्यकता है आप कुछ और अन्य देखेंगे जो हम कर रहे हैं कुछ वास्तविक लाइन एररerror नहीं दे रहे हैं
और आपको यह मिला अतः आपको अपना htmlएचटीएमएलकोड रन करने के बाद यह मिला स्पष्टतः यहाँ पर व्यावहारिकता नहीं है किन्तु हमने उसको कर लिया है
अच्छा तो मैं दूसरा अर्धविराम करने जा रहा हूँ यह एक दूसरी सामान्य एररerrorहै
हम यहाँ पर वापस जाते हैं और अर्धविरामsemicolon पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर एक parse error expecting a semicolon मिली है
अब हम अर्धविराम की आशा क्यों कर रहे हैं यह कोड ठीक दिख रहा है हमें यहाँ पर alex के साथ एक वेरिएबल मिला है हमारे पास यहाँ पर alex के साथ एक अन्य वेरिएबल है
हम इन वेरिएबल्स की तुलना कर रहे हैं हमें इसके अंदर दो बराबर चिह्नों कि आवश्यकता है
यदि यह शर्त सही हैहम यह सूचना एकोechoकरेंगे
अब यदि हम यहाँ जाते हैंline no 9
तो सचमुच में यह एक बहुत ही सरल कोड है यदि यह थोड़ा ज्यादा जटिल होता आप लाइन 9 पर आते किन्तु वास्तव में यह लाइन 9 है
अब इसको देख कर कह सकते हैं कि यहाँ लाइन 9 में कुछ भी ग़लत नहीं है
किन्तु किसी तरह इस लाइन में कुछ न कुछ तो ग़लत है यहाँ पर क्या हो रहा है कि php पीएचपीजिस तरह से पेजों का अर्थ लगाता है; वह एक लाइन के आधार पर है
अतः जो कोड हमने यहाँ देखा है वह उसी के समान है
यह वास्तव में कम्पाइल होगा और कार्य करेगाकिन्तु यह यहाँ पर नीचे है और यह इसी तरह यहाँ ऊपर है; हम अभी भी इसके बाद अर्धविराम की अपेक्षा कर रहे हैं
यदि हम यह करते हैं यह अभी एक मान्य कोड होगा अतः मैंने वहाँ पर एक अर्धविराम जोड़ दिया है जबकि अगर आप देखें तो इसे यहाँ पर होना चाहिए
हम इसे यहाँ नीचे ला सकते हैं अतः मैं इसे अभी फिर से रन करता हूँ
तो हमने कर लिया अतः हमें एक सफल पेज मिल गया
स्पष्टतः यदि मैं इसे यहाँ ऊपर रखूँ तो यह भी एक मान्य कोड होगाजैसा कि वह होना चाहिए
अतः phpपीएचपी उस आधार पर कार्य नहीं करता कि इस लाइन पर यहाँ एक एररerror है
यह सामान्यतः यह बताता है कि वर्तमान लाइन रन नहीं हो सकती क्योंकि पिछली लाइन में एक एररerror है
अतः अर्धविराम के बिना इस लाइन पर इस एररerror की वजह से यह लाइन नहीं रन हो सकती इसलिए यह लाइन लाइन 9 पर एक एररerror के रूप में वापस मिली है आप यह यहाँ देख सकते हैं
अतः यह दो मूल एरर्सerrors हैं जिनको हमने समाविष्ट किया
यदि कभी आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती हैतो केवल जाँचें और अनिवार्य नहीं है कि जिस लाइन पर एररerror मिली है उसी को जाँचें
पीछे जाँचे आगे जाँचें नहींआगे नहीं किन्तु पीछे जाँचें और देखिये यदि आप कुछ ठीक कर सकते हो
यदि आपको करना पड़े तो पूर्णतः प्रत्येक अक्षर का पर्यवेक्षण कीजिये
मुझे लोगों से काफी ईमेल्स मिले हैं जिन्होंने इस तरह की ग़लतियाँ की हैं और मुझे लोगों की सहायता करने में कोई हर्ज़ नहीं है
बेझिझक पूछिएकिन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना कार्य मुझे भेजने से पहले एक दो बल्कि तीन बार जाँच लें
अच्छा अतः अगले भाग में हम बचे हुए एररerror पेजों के बारे में जानेंगे जल्द ही मुलाकात होगी मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद